नमस्कार दोस्तों using file descriptors पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम
कुछ उदाहरणों की सहायता से
एक आउटपुट file descriptor असाइन करना
एक इनपुट file descriptor असाइन करना
फाइल डिस्क्रिप्टर fd बंद करना सीखेंगे
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको bash में shell scripting का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system
* gnu bash version 42
कृपया ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है
परिचय के साथ शुरू करते हैं
हमने पहले से ही पिछले tutorial में file descriptors के बारे में अध्ययन किया है
0 1 और 2 stdin stdout और stderr के लिए standard file descriptors हैं
file descriptors का उपयोग i/o redirection के लिए होता है
एक output file के लिए file descriptor असाइन करने के लिए syntax हैः
exec file descriptor greater than symbol filename
एक उदाहरण देखते हैं
मेरे पास fdassign dot sh name से एक code file है
पहली line shebang line है
exec command मौजूदा shell प्रक्रिया को बदलता है
यह मौजूदा shell के स्थान पर बिना नई प्रक्रिया को बनाए निष्पादित होगा
हम जानते हैं कि 01 और 2 standard file descriptors हैं
किसी भी खोली गई फ़ाइल के लिए हमारे पास 3 से 9 तक अतिरिक्त file descriptors हैं
यहाँ 3 file descriptor है
यह output dot txt फाइल में output लिखेगा
string welcome to bash learning output dot txt file में भेजी जा चुकी है
इसे file descriptor 3 के माध्यम से किया गया है
यह एक file में string को पुनः निर्देशित करने के समान है
प्रत्येक नया string फाइल के साथ संलग्न किया जाएगा
उदाहरण के लिएः
हम output dot txt फाइल में मौजूदा system date संलग्न करेंगे
syntax है: date space greaterthan symbol ampersand sign 3
यहाँ हम file descriptor को बंद करते हैं
इस line के बाद descriptor output dot txt file में कुछ भी नहीं लिख सकता है
code निष्पादित करें और output देखें
ctrl + alt + t कीज का उपयोग कर terminal खोलें
type करें: chmod space plus x space fdassign dot sh
type करें: dot slash fdassign dot sh
अब cat space output dot txt टाइप करके output जाँचे
हम देख सकते हैं कि string welcome to bash learning और system की वर्तमान date प्रदर्शित होती है
editor पर वापस जाएँ
अब मैं अंत में echo type करुँगी descriptor के बंद होने के बाद
type करें: echo space quotes में hi quotes के बाद space greater than symbol ampersand sign 3
save पर click करें
एक बार फिर script निष्पादित करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है
terminal पर पिछली command dot slash fdassign dot sh को recall करने के लिए uparrow की दो बार दबाएँ
enter दबाएँ
हम एक error देखते हैं
bad file descriptor
इस error को ठीक करते हैं
editor पर वापस आएँ
मैं code की अंतिम line cut करुँगी और इसे date command के नीचे paste करुँगी
save पर click करें
code को एक बार फिर से निष्पादित करते हैं terminal पर
पिछली command dot slash fdassign sh को recall करें
enter दबाएँ
अब output dot txt file खोलें
type करें: cat space output dot txt
हम output देख सकते हैं
string hi अंत में प्रदर्शित होती है
अब हम input फ़ाइल के लिए फाइल descriptor असाइन करेंगे
एक उदाहरण देखते हैं
मैरे पास fdread dot sh named file है
इसे देखते हैं
यह exec command है
यहाँ हम output dot txt फाइल read करेंगे
line exec 3 less than symbol output dot txt फाइल को पढ़ने के लिए खोलेगी
cat command फाइल के कंटेंट को प्रदर्शित करेगा
और and में हम file descriptor and करते हैं
अब इस shell script को निष्पादित करते हैं
terminal पर मैं prompt को clear करती हूँ
type करें: chmod space plus x space fdread dot sh
type करें dot slash fdread dot sh
हम terminal पर output देख सकते हैं
output dot txt file का कंटेंट प्रदर्शित होता है
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
slides पर वापस आएँ
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
output file descriptor को असाइन करना
input file descriptor को असाइन करना
file descriptor को बंद करना
नियत कार्य के रूप में
file descriptors का उपयोग करके test dot txt file में कुछ lines को संलग्न करने का प्रयास करें
file descriptors का उपयोग करके file के कंटेंट को प्रदर्शित करें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
spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद